ये एक शॉप और इस शॉप के अंदर जस्ट कपड़े रखे हुए हैं वो भी बहोत ही ज्यादा सुंदर सुंदर रंग बिरंगा--

ये एक दुकान है और रोड के सामने ही जस्ट खुली हुई है जिसमें चाइनीस सेंटर भी है।

और दो चेयर है जिससे और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं।

ये एक स्टेशन है स्टेशन में इतनी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन है और तीन लोग जा रे भी हैं।

बहोत ही ज्यादा सुंदर सी यह हॉस्टल है।

जिसमें काफी सारे लाइट्स लगे हुए है।

ये एक बड़ी सी मैदान है जो कि एक लोग कोई लिया होगा जिसमें अपना कुछ--

ये एक ऑफिस है जो की दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है और नीट एंड क्लीन भी है जो की बहोत सारी लाइतीस लगी हुई है।

ये एक शॉप ये जो कि मिठाई की है और--

ये एक स्टेडनरी का शॉप हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर हैं यहां बहोत सारे खिलौने भी दिख रहे हैं।

एक हॉस्पिटल है जो की काफी ज्यादा सुंदर है और जस्ट बगल में ही एक कार खड़ी हुई है।

येलो कलर का डिजाइन किया गया है जो की काफी सुन--

ये एक स्कूल है जो दीखने में काफी ज्यादी सही है और यह चारों तरफ--

पौधी है एंड पेड़ है और एक बॉय ब भैया भी है।

ये एक सुंदर सा शोरूम में सुंदर से रूम के अंदर--